इस इमेज हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है। रास्ते के सामने हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग हमें ब्राउन रंग की दिख रही है।

ओर पीछे की तरफ हमें पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो लाल रंग और गुलाबी रंग के दिखाई दे रहे हैं और कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं जो नीले पीले हरे दिखाई दे रहे हैं।